और यहाँ पर जे.सी.बी. से गड्डे खुदते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काम चल रहा है।

यह डॉक्टर पर्चा बनाते हुए नजर आ रहे है और लोग दवाई लेते हुए नजर आ रहे है।

ये एक इमेज है इस इमेज में एक लड़की नृत्ये करती हुई नजर आ रही है और उसने नृत्ये की पहन राखी है और लाल कारपेट पे नजर आ रही है।

ये एक इमेज है इस इमेज में एक बुद्ध की मूर्ति नजर आ रही है।